ये एस.बी.आई. का ए.टी.एम. है और ये ए.टी.एम. मशीन में लोग पैसे विथड्रॉ करते हैं और बाहर भी कुछ लगा हुआ है उनके रूल --

और मम्म बाहर लोग बैठ के कुछ ले रहे है और लाल रंग की बकेट भी है।